और व्हाइट एंड ब्लैक कलर की चेक शर्ट पहना हुआ है और वो उ जीन्स का पैंट पहना हुआ है यहाँ बहुत साड़ी गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पर एक बैंक भी है।

यहां पे एक बिल्डिंग जो व्हाइट व्हाइट कलर की है। यहां पर दो बहुत सारी कार खड़ी है।

देख रहा है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहना हुआ हैं ब्लैक कलर का पेंट पहना हुआ हैं वहां पर टू व्हीलर गाडियां भी खड़ी है यहां पर ऊपर आसमान है जो स्काई ब्लू का है।

तो वो दुकान खुली हुई है जहा पर बहुत साडी साइकिलें खड़ी हुई हैं बच्चो की | यहाँ पर बहुत सारे स्टूल रखे हुए हैं जो रेड ब्लू एंड वाइट कलर के हैं |

यहाँ पर एक अ कैफ़े बना हुआ है जहाँ बहार बहुत साड़ी लड़कियां खड़ी हुई हैं जिसमे एक पिंक कलर की टी-शर्ट पहनी एक व्हाइट कलर टी-शर्ट पहनी हुई है।

ऊपर एक बैनर लगा हुआ है जो ऑरेंज एंड क्रीम कलर का है।

यहाँ पर एक दूकान बनी हुई हैं। ये दूकान का कलर पूरा वाइट हैं और यहाँ पे एक जेंट्स खड़ा हुआ हैं जिसने ब्लैक कलर का पेंट पहना हुआ हैं।

जो इसके पे जूस रखा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे बिस्किट के पैकेट रखे हुए नीचे बहुत सारी बोरिया रखी हुई हैं।

वहां पर एक दुकान खुली हुई है जहां साइकिले बस सारी बच्चो की टंगी हुई हैं कुछ नीचे रखी हुई हैं यहां पर बैनर लगा हुआ है जो रेड एण्ड व्हाइट कलर का है और ये बैनर मे झालर भी लगी हुई हैं जो व्हाइट कलर की है ऊपर आसमान है।

रोड के किनारे बहुत सारी घासें उगी हुई हैं जो ग्रीन कलर की हैं | यहाँ पर एक छोटा सा सामने घर भी बना हुआ है और यहाँ साइड में बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई हैं | यहाँ पर एक ट्री लगा हुआ है जिसमे ग्रीन ग्रीन पत्ती --

गाड़ी खड़ी है जो व्हाइट कलर की है और अ उसमे परदे लगे हुए हैग्रीन कलर के यहा पर एक टू व्हीलर भी गाड़ी है जो ब्लैक कलर की है।

यहां पर बहुत सारी सीढ़ी बनी हुई है बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं ऊपर आसमान है जो पूरा स्काई ब्लू कलर का हैनीचे बहुत सारी फर्श में मट्टी पड़ी हुई है।

बिल्डिंग में गेट लगा हुआ है जो वाइट कलर का है ऊपर आसमान है स्काई ब्लू कलर का यहाँ पर दो तीन गाड़ी खड़ी हैं |

यहां पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड बना हुआ है । ग्राउंड में बहुत सारे टू व्हीलरें गाड़ी खड़ी हुई हैं और बहुत सारी फोर व्हीलरें गाड़ी खड़ी हुई हैं और बहुत सारी साइकलें भी खड़ी हुई हैं यहां पर ग्राउंड में बहुत भीड़ है ।

यहां पर एक जेंट्स है जो बैठा हुआ है जिसने स्काई ब्लू कलर की शर्ट और ब्लू कलर का पेंट पहना हुआ है और यहां पर एक जेंट्स ने ब्लू कलर का पेंट ग्रे कलर के स्वेटर और पहना हुआ है।

यहाँ पर एक अ रोड बनी हुई है | रोड में एक दुकान बनी हुई है जोकी अंदर एक लेडी बैठी हुई है उसने पर्पल कलर का कपड़ा पहने हुआ है।

एक लड़का खड़ा हुआ है जो साइकिल में है जिसने वाई ग्रे कलर का पैंट पहना हुआ है और --